डेकोरेशन दिखाई दे रहा है ए_सी का एक्सटर्नल लगा हुआ है और कुछ जानिया दिखाई दे रही है।

ए टीचर्स भी खड़ी है इस बिल्डिंग का कलर क्रीमिश येलो है आस-पास कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं कुछ घास उगी हुई है क्यारिया नजर आ रहे हैं।

साथ ही में एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसकी छत बिना प्लास्टर की है सामने एक कार खड़ी हुई है वाइट कलर की--

सामने की और एक ग्रीन कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें व्हाइट कलर की गैलरीज है नीचे एक रेड एंड येलो कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है। --